वहां पर कुर्सीयन दिखाई दे रहे है जो की सोफा का ऊपर में लगा हुआ है और वहां वाल दिखाई दे रहा है और वह एक टेबल दिखाई दे रहा हैं।

बड़ा सा एक शॉप दिखाई दे रहा है जिसमे चार काउंटर दिखाई दे रहे हैं और उसका ऊपर में लिखा हुआ है लाल कलर का विशाखा डेयरी पार्लर ।

प्लेट्स दिखाई दे रहे जिसका ऊपर खाने को अरेंज करके रखा हुआ है और वहां पर न्यूज़ पेपर दिखाई दे रहे हैं जिसका ऊपर में प्लेट्स लोग को रखा हुआ है।

वहां बहुत बड़ा बड़ा ट्रीज लोग भी दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर से पेंट किया गया है और वहां पर छोटा छोटा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है एंट्री ।

वहां पर विंडोज दिखाई दे रहा है और वहां पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जोकि गेट का ऊपर में है और उसमें कुछ लिखा हुआ है और वहां लोग--

वहां माउस लैपटॉप बैग दिखाई दे रहे है जोकि टेबल का ऊपर रखा हुआ है।

वहां एक व्हाइट कलर का शेल्फ दिखाई दे रहा है जिसमें सामानों को अरेंज करके रखा हुआ है और वहां एक ए_सी दिखाई दे रहा है।

वहां पर सोफा भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड और--

यहां बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जोकि येलो कलर का है।

यहां पर रूम दिखाई दे रहे हैं जो कि एक शॉप है किचनवेयर का।

वहां पर एक लड़की का पेंटिंग दिखाई दे रहा है जो की डोर में लगा हुआ है।

यहां पर बोर्ड दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का जिसमें हाजीपुर लिखा हुआ है और वहां बहुत बड़ा से रोड दिखाई दे रहा है।